यह एक पुराना घर है यह घर काफी सूंदर है इस घर के किनारे बड़े-बड़े पेड़ है इस घर के किनारे एक तालाब भी है यह तालाब बहुत बड़ी है इस तालाब में पानी भी है वा यह मछली भी है इस तालाब का पानी सिंचाई के --

यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है | यह बैंक काफी बड़ा है इस बैंक में पैसे के लेन देन होती है यह बैंक के बाहर बड़ी गेट लगी है | यहाँ बैंक में मैनेजर भी है यहाँ पर बहुत सारी स्टाफ भी है ।